पांच आदमी खड़े हुए हैं।

चार बाइक जा रही है।

सामने एक मशीन ।

एक बिल्डिंग दिखाई दे--

यें जिसका रंग सफेद --